दो कपल तस्वीर खींचा रहे हैं और सामने बहोत से पेड़ पौधे भी हैं।

गार्डन में बहोत से पेड़ पौधे हैं।

यह एक झरना है जो कि पेड़ और पौधों से पूरा--

पेड़ लगे हुए है उनके बीच में यहां पे तीन जंगली जानवर भी हैं।

यह एक झरना है जोकि बहोत बड़ा है इस झरने के--

पेड़ पौधे हैं और यहां पर एक लड़की उन पौधों को पानी भी दे रही है।

यह एक बहोत बड़ा झरना है जोकि--

यहां एक अमूल मिल्क की दुकान है।

यहां की सीड़ीओ के ऊपर एक बिस्तर है।

और इस शॉप में बहुत सी ज्वेलरीज बाहर लगी हुई है।

और इधर एक बोर्ड में डेडीकेशन भी लिखा हुआ है।

यहां पे पेप्सी भी मिलती है और इस दुकान में एक कूलर है।

यहां पर बहोत सारी एक्सरसाइज की मशीन है।

यह एक होटल है जहां पे--

जिसके बोर्ड में अमूल लिखा हुआ है।

हाजिरी जंक्शन का स्टेशन --

और कुछ लोग अंदर जा रहे हैं।

इस ढाबे के बाहर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं।